बढ़िया होता है और अच्छा हो --

एक बस है बस में जान बस होने से हम लोग को ज्यादा सुविस्ता हुआ है। कहीं पर भी आने-जाने के लिए सफर करने के लिए बस होना आवश्यक है जिससे पहले --

यह कोई फेस्टिवल मना सकते हैं जो हर चीज के लिए ही है। केक स्टोर में हमलोग अपना घर का लिए आर्डर कर सकते हैं ये वो केक स्टो --